यहाँ पर बहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है उसमे बहोत सारे जहाज वगेरा दिखाई दे रहे है साइड वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे है।